लिखा हुआ है और हिताची का ऐड भी दिया हुआ है। ऊपर और हम्म बैंक के अंदर तो फ़िलहाल कोई लोग दिख नहीं रहा है।

ये एक बैंक का ए_टी_एम् है व खाली है कनडा बैंक है। अंदर कोई लॉक नहीं है।

बाएं तरफ ए सी का बाहर का जो पंखा होता है वो है उसका और एक साइड पे गेट है। बाइक भी खड़ा हुआ है।

फूल का कुछ है। एक्सटिंगूशर दिख रहा है। एक साइन बोर्ड दिख एक बोर्ड तथा एसी दिख रहा है और कोई इंसान दिख नहीं रहा है। एक डस्टबिन भी दिख रहा है। कुछ लिखा हुआ दिखल है।